टैटू शॉप की दिख रही है जहां पर--

एक आदमी के हाथ पर टैटू बना हुआ है।

और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं पेड़ है ग्राउंड है पूरा--

और छे चार ने दूल्हा बैठे हैं खड़े हैं।

यह एक कपड़े बनाने की मशीन दिख रही है।

अमूल की रियल मिल्क रियल आइसक्रीम और बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

जहाँ पर बहोत सारी कार खड़ी हुई हैं व्हाइट कलर की बहोत अच्छी जगह हैं।

उसके अंदर जा रहा है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

बाहर एक्सटिंग्विशन प्रोग्राम की दिख रही है जहां पर--

और कार में से बहोत सारे फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के रखे हैं।

पर ये एक अपराध है पेड़ को मां--

यह इमेज है प्लेग्राउंड भी दिख रही है जहां बहुत सारी मास्क रखे हुए है। बहुत बड़ा ग्राउंड है और --

बेड रखा हुआ है और बहोत।--

बहोत सारी इमोजीस लगे हुए हैं।

बहोत ही अच्छी दिख रही है। बहोत सारे रिसेप्शनिस्ट भी बैठे हुए हैं।

नाइट गार्डन की है जहां पर--